रात के मोरल रिच मैदान का नजारा दिख रहा है।

और पीछे घना जंगल नजर आ रहा है जिसमें कि काफी सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

ये देखने में टोयोटा फॉर्च्यूनर लग रही है।

चारों ओर बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

ये काफी पुराने नजर आ रहे हैं।

यहां पर हम ढेर सारे हरे भरे पहाड़ देख रहे हैं।

यहां पर हमें टेबल चेयर --

चार फ्लोर देख सकते हैं और इसकी छत भी लाल कलर की नजर आ रही हैं।

यहां पर एच_आर_टी_सी की बसें और के नीले कलर की दिख रही हैं।

और दो दरवाजे भी वाइट कलर के हैं और--

यहां पे हम एक तृप्ति जस्ट --

ये एक मंदिर का नजारा देख रहे हैं।

यहां पर हम एक ओपन जिम व्यायामशाला देख रहे हैं।

व्हाइट फ्रॉक नीले कलर के बॉक्सेस में --

इनके बीच से जाती हुई रोड दिख रहे हैं।